जिसके पास एक मुझे उम रेड क व्हाइट कलर का भी दे रहा है उसके सामने टीवी चलता हुआ देखा जाता है। भी दिखाई दे रहा--

यहाँ पर मुझे दो गाड़ियां दिखाई दे रही हैजहां एक गाड़ी का कलर रेड दिखाई दे रहा है जहां दूसरी गाड़ी का कलर येल्लो दिखाई दे रहा है जहां मुझे सामने की तरह घर भी दिखाई दे रहा है जहाँ की घर ऑरेंज कलर में डिज़ाइन किया हुआ दिख रहा हैयहाँ मुझे--

हाय जिम -का थीम येल्लो और ग्रीन में रखा गया है दही उ जिम अच्छा लग रहा है और यहां पे मुझे बहुत सारे प्लेट से भी दिख रही है और यहां पे मुझे एक मिरर भी दिख रहा है।

इहापे मुझे बहुत सेके लेडी दिखाई दे रही है जो एक बिल्डिंग -के सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिनके हाथ में सामान भी दिखाई दे रहा है जहां बिल्डिंग भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है चाहिए यहां पे फ्लैट --

ईहा पे मुझे एक जिम ल जिम दिखाई दे रहा है जहा पे लोग वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां यह जिम एक बहती सि देख रहा हे यह सुबह का फोटो दिख रहा है। जहां लोग आ आ आपने ब वर्कआउट करते हुए दिखा जा सकते हे--

यह जिम एक होम जेसे लग रहा है। जैसे बहुत सारा सामान भी दिख रहा है। मेरे सामने टॉवल रखे हुए भी एक मिनट में दिख रहे है।

जब जिसके नीचे की डायरी रखी हुई दिख रही है यह एक रि आ रीसेप्शनिस्ट हो सकता है ता कि एक हेल्प लग रहा है सामने एक पोस्टार भी दिख रहा है जिस पर वहां फैमिली बनी हुई दिख रही है।